सामने की तरफ कुछ कुछ स्कूल बस खड़ी हुई हैं जिनमें से एक छोटी है और कुछ बड़ी हैं।

और साइड में घड़ी टंगी हुई है नीचे की तरफ कुछ फ्लावर पोट रखे हैं जिनमें पौधे खड़े है।

और साइड में कुछ पेड़ खड़े हुए हैं पीछे बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

और एक ड्रम रखा हुआ है। नीचे की तरफ ईंट बिछी हुई हैं जिनपे पीले कलर कि लाइनें लगी हुई हैं।

इसमें साइड में एक मशीन लगी हुई है और टेबल रखी है जिस पर कुछ दवाइयां के बोक्सेस् रखे हुए हैं।

जिसने आदमी ने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है और लड़की ने काले कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

ऊपर सामने दीवार पर एक दर्श का बहौत बड़ा बैनर लगा हुआ है।

और कुछ इस पर कालीन बिछी है जो हरे कलर की है और साइडों में कुछ पौधे खड़े हुए हैं।

और कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। सामने की तरफ दो टंकी लगी हुई हैं। एक स्टील की है एक प्लास्टिक की है और एक स्विच लगा हुआ है लाइट का।

और कुछ छोटे हिरन है और कुछ बड़े हिरन है। एक हिरन नीचे की तरफ चारा चूक रहा है।

और एक रेलिंग है जो कि लकड़ी की बनी हुई है जिस पर एक पीले कलर का कट्टा रखा है।

छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं पीछे की तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें घास खड़ी है।

और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ उस पर कार छपी हुई है और नीचे की तरफ शटर दिखाई दे रहे हैं।

और एक पेड़ खड़ा साइडों में कुछ झाड़ खड़े है नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है पन्नी पड़ी हुई है।

और सामने की तरफ कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

कुछ लाइटें और लगी हुई है एक बोर्ड लगा हुआ है और साइड में एक झालर लटकी हुई है।

कलर सफेद है सामने की तरफ एक लड़का खड़ा है जिसने हाथ में फोन ले रखा है जिन बच्चे के फोटो ले रहा है।

सामने की तरफ कुछ दरवाजे बने हुए हैं जिन पर शीशा लगा हुआ है।

जिसपर सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसपर रे रेलिंग लगी हुई है जो स्टील की है और सा --

इस फोटो में एक बड़ा सा गार्डन दिखाया गया है जिसमें साइडों में बहुत ऊँची ऊँची घास लगी हुई है जो कि एक जाली के ऊपर लगी हुई है।

और उसने नेकबैंड पहना हुआ है जो लाल कलर का है और हाथ में बोतल ले रखी है।

इस फोटो के अंदर एक छोटे सा घर दिखाया गया है जिसमें साइडों में कुछ पेड़ खड़े हुए हैं और एक बड़ा पेड़ खड़ा है।

और इनके ऊपर ब्रेड रखे हुए हैं जिन पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो कि एक पन्नी मे पैक हैं।

ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है पीछे की तरफ खाली ग्राउंड पड़ा हुआ ह--

सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ए वन एन जे बी पार्लर लिखा हुआ है।

और सामने की तरफ कुछ सामान टंगा हुआ है और गेट लगा हुआ है जिसमें परदे टंगे हुए हैं।

इस पर एक बड़ी सी विंडो लगी हुई है और एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर लाइट जल रही है और सामने की तब कुछ मालाएं लगी हुई हैं और कुछ झूमर लटके हुए हैं।

जो जाली का बना हुआ है लोहे का जो काले कलर का है और साइड में हाथ दिखाई दे रहे हैं जि जिनके हाथ में कड़ा है।

साइडों में थंब है उसपर एक पोस्टर लगा हुआ गौर सामने की तरफ एक बिल्डिंग है।

लकड़ी खड़ी हुई है और सामने की तरफ एक दीवार है जिस पर हरा कलर है और कुछ ईट दिखाई दे रही है।